ये एक अ पिंक कलर का बिल्डिंग है अ तीन माले का बाहर बहुत क्लीन है।

एक बहुत बड़ा ओपन हॉल जैसा है और दोनों जगह पे रेड कलर का कारपेट है।

और पीछे भी बड़ा टेबल है और छोटा छोटा कबर्ड है।